होटल है जिसका नाम सोनी होटल है इसमें खाना बन रहे हैं दो-चार गैस रखा हुआ है जो लग रहा है किचन टाइप है और इसमें शीशा के बगल में कुछ आदमी खड़े हुए सिलेंडर दिख रहा है खिड़की लगा हुआ है सी --